फोटो दिखाए गए हैं और इस चट्टान में एक तरह की --

शरीर में बनते है और शरीर में हमारे फुर्ती रहते हैं।

और विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी --

प्राप्त होते हैं विद्यालय में बहुत सारे टीचर रह --

गधा का फोटो दिखाया गया है।

ऊपर कर के डिजाइन से --

घूमने के लिये पिकनिक मनाने के लिए --

बहुत सारे कैमरेमैन वाले गए हैं।